बस का नंबर के टवेंटी कर्नाटका का बस फोटो भी है और दो आदमी भी है। निशल का पानी है।

ये लगता है तो इंडिया का फोटो नहीं है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। रोड बहुत साफ़ है और घर सब भी बहुत साफ़ सुथरा है। एक केला का गाछ भी है। एक नारियल का गाछ भी है।

ये वो बड़ा-बड़ा ऐसा लगता है उसके ऊपर पानी टंकी है और एक चचा जा रहे है। नीचे कचरा है बहुत ज्यादा ये कचरा नहीं ये घास है बहुत हड़ा-भरा उसी का पत्ता गिरा हुआ है। बगल में गोबर भी है।

जेंट्स भी है लेडीज भी है सभी हाथ जोड़े हुए है और नीचे पलथी मालकर बैठे हुए है| और एक लेडीज अपने पीठ के पीछे तकिया रखा हुुआ है बोहोत अच्छा लगता है।

ये ये ड्राइंग में मुझे समझ में आ रहा है ये कोई शेर बनाया है कोई चिड़िया है कोई घर है मतलब कटिंग - कटिंग कर करके बनाया बहोत खूबसूरत बनाया है।

यहाँ पर एक सब्जी का दुकान है और ढेर सारे सब्जिया मिले तरह-तरह के हरा-हरा ताजा सब्जिया है।

यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं आराम करते है| अंदर किसी चीज का ऑफिस लग रहा है कोई चीज का रूम है बहुत खूबसूरत है टाइल्स लगा हुआ है वाइट - वाइट |

और बोहोत अच्छा सजावट किया गया है खाली पोल पे किया गया है और एक लेडिज खड़ी है एक जेंट्स है।

और बुलु जैसा दरम लगा हुआ है बहुत निचे लाल कार्पेट बिछा हुआ है। दो बड़े-बड़े गुलदस्ता हा--

एक चाचा जी जो है टेम्पो चला रहे है और कुछ आदमी सामान खरीद रहे है। उधर फल-वूल भी मिल रहा है।

दो नंबर में एक नंबर फोर नंबर है पीछे भी वह भी लग रहा है डीजल लग रहा है लगता है वन टू पे ट्रोल मिलता होगा यहाँ पर बोहोत बड़ा-बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी सभी प्रकार गाड़ी आते रहते है।

और दो बच्चे हैं जो केंडल लिए हुए हैं और एक उन लोगों का गुरु जी होता है जो प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ कर --